और साइडों पे सोफे लगे हुए हैं।

सामने काफी बड़े टेबल चेयर्स भी लगे हुए हैं।

ये तस्वीर का फोटो स्टेट लॅमिलेशन की छोटी छोटी दुकानों की हैं।

और इस मंदिर के किनारे पे काफी घास उगी हुईं हैं और काफी बड़े पेड़ भी लगे हुएं हैं।

ये तस्वीर एक शॉप अ एल_जी की दुकान की है।

इस तस्वीर में एक छोटी सी कॉलोनी है कॉलोनी के सामने एक अ काफी--

इस तस्वीर में एक बड़ी स्टेज है जिसमें ताकि म्यूजिक बड़े बड़े स्पीकर लगे हैं दीवार पे एक बड़ा पोस्टर लगा है।

इस तस्वीर में एक दुकान है जिसका बाहर बड़ा पोस्टर लगा है पोस्टर पर कुछ कांटेक्ट नंबर लिखें हैं।

यह तस्वीर एक सैलून की है जो एक छोटा सा रूम है जिसके अंदर काफी कॉस्मेटिक का सामान ब्यूटी का सामान रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक अलग से रूम है जिसमें प्रभु की तस्वीरें है अगरबत्ती है।

जहां पे छोटे छोटे पौधे लगे हैं उनकी अच्छे से कटिंग की गई है और पास में ही एक बड़ा टेबल है।

एक छोटा लड़का और नीचे काफी समान भी बिखरा हुआ है पेचकस--

और पास में ही दो तीन छोटे छोटे पौधे लगे हैं इनकी अच्छे से कटिंग की गई है।